ये टेबल पे रखे हुए हैं | यहाँ पे पाँच फ्लावर पोट हैं | बहुत ही अच्छे कलर किये गए हैं | ब्लू ग्रीन रेड येलो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं |

और ये येलो कलर के हैं।

एक बिल्डिंग पर एक ग्रीन कलर का नेट लटका हुआ है और एक बिल्डिंग पे काफी सारे बॉस के जो हैं जाल लगे हुए हैं | सामने एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है |

यह हमे बहुत प्यारा सा एक सुंदर सा जो है एंटीक लकड़ी का सोफा बना दिखाई दे रहा है। जिसपे एक बहुत ही खूबसूरत जो है कलाकृति की गयी है |

यहाँ बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारी हमें नदी दिखाई दे रही है |

घर के सामने बहुत बड़ा सा जो है रोड है जिसपे कुछ हमे कार स दिखाई दे रही है।

यहाँ हमे एक जो है छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है | तालाब में हमें दो बत्तक दिखाई दे रही है जोकि ब्लैक कलर की दिख रही हैं।

यहाँ हमें एक बहुत ही सुन्दर सा जो है मोर दिखाई दे रहा है| मोर नाचता हुआ है उसके पूरे पंख खुले हुए हैं|